एक लड़की य टी-शर्ट पहनी व्हाइट कलर की ब्लैक कलर के पैंट पहनी है।

जमीन में हरी हरी घास निकली हुई है सामने कुतुब मीनार दिखाई दे रही है।

बाहर दो बाइक खड़ी दिखाई दे रही है ब्लैक और रेड कलर की एक खंभा दिखाई दे रहा है लोहे का--

ये एक रोड है जिसमें बोहोत सारी गाड़ियां चल रही हैं। ऑटो रिक्शा हैं स्कूटी हैं।

ये एक बड़ी सी दुकान है इसमें रेड कलर का बैनर लगा हुआ है ऊपर और बहुत सारी चिप्स टंगी हुई हैं।

एक खंभा दिखाई दे रहा है लोहे का जिसमें दो लाइटें लगी हैं और रेड कलर के रेलिंग लगी हुई है।

कुछ चीजे टंगी हैं कपड़े टंगे हैं बल्ब लगे हैं।

ये एक कमरा है जिसमें फर्नीचर का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

क्रीम कलर का पेंट हुआ है ए_सी लगी हुई है।

ग्रीन कलर की रेलिंग लगी हुई है एक खंबा दिखाई दे रहा है।

इसमें कवर लगे हुए हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं लाइटों से सजावट हुई है।

ये एक स्टेशन है ऊपर छत पे टी टीन डली हुई है।

और फाइबर की नाइफ रखी हुई है।

बड़ी मछली है छोटी मछली है एक चिंगुआ मछली है।

ये एक मैदान है जिसमें हरी हरी पत्तियां निकली हुई हैं।

चोंच उसके रेड कलर के है क्रीम कलर की इसकी टांगे हैं।

इसमें तीन औरते दिखाई दे रही हैं रंग बिरंग साड़ी पहने हुए हैं।

उड़ियां पहने हैं हाथों में गले में नेकलेस पहने हुए हैं।

पर्दे दिखाई दे रहे ब्लू कलर के एक पर्पल कलर का भी पर्दा दिखाई दे रहा है।

जमीन पे टाइल्स बिछी है दीवार पे रेड और वाइट कलर का पेंट हुआ है।